और पीछे बहोत सारे अमूल के डब्बे रखे हुए हैं और--

और इसके अन्दर मॉल लोड हो रहा है पीछे कुछ गट्टे रखें हुये है।

और कुछ फूल लगे हुए है जी यहां पर फर्स्ट डे लिखा हुआ है।

इस चित्र में हमें यहां पर कोई वाटर पार्क दिखाया गया है।